स्कूल का नाम जो है वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल है जूनियर विंग सेक्टर सैंतीस बी ।

गमलों के अंदर से कुछ फुले दिखाई दे रहे हैं फूल जो है वो कई पर्पल कलर के हैं कोई व्हाइट कलर का है अ--

अब साइड साइड में बहुत सारे पेड़ हैं और एक जो घोड़े जैसी कटिंग की है।

ये हॉस्पिटल लग रहे हैं और साइड में जो है वो पेड़ है पेड़ के पत्ते झड़ चुके हैं।

इसके सामने से एक मैट बिछाया है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

एक शॉप दिखाई दे रही है जी शॉप का नाम है छबरा टेलीकॉम --

दो पेड़ लगाए गए हैं और दीवाल का कलर --